फैन या कार टाइप की कुछ खड़ी है। अ जिसके अ कार के अ--

ये एक ऑफिस रूम का मीटिंग रूम का ये पिक्चर दिख रहा है जहां पर एक बड़ा सा सेंटर टेबल है।

यहां पर एक छोटा सा घर टाइप का बना हुआ है और सामने एक टोटो अ रेड कलर का टोटो खड़ा है और एक अ उम्म --

अ पूजा टाइप का कुछ कर रहे हैं लेडी है और कुछ औरतें जो कि गेरवा कपड़े पहने हुए हैं।

यहां पर एक छोटा सा मंदिर टाइप का कुछ बना हुआ है झांकी टाइप का शायद --

अ सामने क्लास में और अ कुछ कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं।

डेकोरेशन का कुछ दुकान टाइप का लग रहा है थोड़ा सा बड़ा सा दुकान है।

ये एक चर्च का अंदर का फोटो है यहां पर एक फादर है सामने में और एक।

टेबिल है एक सेंटर टेबिल है यहां पर कुछ कुछ लि अ रखा हुआ है।

और इस इसके जो एंटेस को बैलून से सजाया गया है।

टॉप टॉप का कोई नजारा है मतलब पहाड़ के ऊपर ये सब का नजारा है।

और बहोत सारी ज्वेलरी अह अंदर में अह सजाई गई है और सामने में भी बहोत सारी ज्वेलरी रखी हुई है।

इंटेल डेल ये सब कंपनी का अ ये एक लैपटॉप का स्टोर लग रहा--

ये एक अ बहोत ही सुंदर सा आइसक्रीम पार्लर है आइसक्रीम की दुकान जिसको हम बोलते हैं।

यहां पर ट्विस्टर सूप अ बोर्ड लगा हुआ है आइसक्रीम का कुछ कुछ बोर्ड और पा प्राइस रेट टंगा हुआ है।

ऑफिस एरिया या फिर स्टडी रूम टाइप का हैं ये--

अअ बिल्डिंग के अंदर बड़ा सा बिल्डिंग जो होता है ना उसके अंदर है बहोत सारे लोग आना जाना कर रहे हैं।